इसका ये ए.टी.एम. बना हुआ है लोग अक्सर यहाँ पैसे निकालने के लिए आते हैं बैंक से पैसे जमा करते हैं और फिर ए.टी.एम. से निकाल लेते हैं ।